एक ये वस्त्र पहना हुआ है जिसमे ओरेंज यल्लो कलर करा हुआ है।

जोकि पूरी तरह से डेमेज हैं इसके आगे का भाग --

जिसके आसपास स्कूल की एक बाउनड्री वॉल भी बनाई गई है।

ग्राउंड फ्लोर पे ए.टी.ऍम कलासिस का येल्लो कलर का बोर्ड लगाया गया उसके फर्स्ट फ्लोर पे भी --

एक बोर्ड लगाया गया है जोकि जिसमे लिखा है वी.आई.पी. हैदराबाद बिरयानी इसमें कही कही पे लाइटे भी लगाई गई हैं।

और इसके ऊपर भारतीयो का फ्लैग लगाया गया है और उसी के अंदर कुछ लेडिसे बैठी बा --

ये एक फिश पॉट की तस्वीर है जिसमे फिश अ दिखाई गई है।

जिसके जिसे इसकी मसल्श दिखाई पड़ते हैं।

यह एक कॉफी शॉप की तस्वीर है।

यह तस्वीर किसी बच्चे का बरडे सेलिब्रेट --

लोग खरीदने के लिए आए बट सब जेंट्स हैं इसमें।